बहुत सारी चीज़े पहिये वहिये निकालते है।

जो महल के ऊपर लगते है मिनारे जैसे होते है।

एक नृत्य करते हुए औरत या आदमी उसका हाथ आ गया है तो वो दिख नहीं रहा है।

जो बिलासपुर जा रही है कोरबा जा रही है बिलासपुर जा रही है कोरबा जा रही है।

बढ़िया नज़ारा पहाड़ के ऊपर से फोटो खीचा गया है।

बोहत सुन्दर दृश्य दिख रहा है ये आसमान भी बारिश जैसा हो रहा है ।

बढ़िया गार्डन का नजारा --

बोहत सारे लोग घूम रहे हे ।

ये टेंट क्यों लगाया थ गया था।

हल्के-हल्के गड्डे है हल्के क्या बहोत सारे गड्डे है इस दीवारों में--

साइड-साइड बढ़िया से पौधे लगे हुए है।

ये किसी हार्डवेयर की दुकान का हैं ।

कांटों के अंदर एक लाल कलर की टी शर्ट में --

विजय पुस्तक भण्डार ये भैया जी विजय भैया जी की पुस्तकालय का है।